ये एक रूम है बेड पड़ा हुआ है बेड पर बिस्तर बिछा हुआ है।

मतलब ऑन कुर्सी के ऊपर कवर चढ़ा हुआ एक लाल कलर का कवर है।

ये एक पेट्रोल टंकी है जहां पर बहोत सारे लोग खड़े हैं बहोत बाइक लेकर आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए।

ट्रक खड़ा है लाल कलर का और बहोत सारे लोग खड़े हैं यहां पर।

ये हजरतगंज है जी ब्लैकबोर्ड लगा है उस पे लिखा है हजरतगंज इंग्लिश में हिंदी में।

मूर्ति ऊपर गोल्डन कलर की अ बनी हुई है।

और पेड़ लगे हुए हैं पीछे हरे भरे पेड़ हैं और--

खजूर के पेड़ लगे हुए हैं।

बाहर एक छोटा सा बिल्कुल झोपड़ी टाइप में घर बना हुआ है।

कैरेट अ बहोत सारी कैरेट है जिसमें मछली रखी हुई है और बहोत सारी मछली नीचे पड़ी हुई है।

लेफ्ट साइड में एक बोर्ड लगा है। जिस पे ब्लू है। ब्लू कलर से और एक राइट साइड में अ व्हाइट कलर का बोर्ड लगा जिस पे अब्दुल कलाम छपे हुए --

एक अलमारी की तरह उम खोलने वाले रैक सामने रखे हुए हैं और अह ईंटों वाली दीवाल है।

कुर्सी रखी हुई है ब्लैक कलर की।

घर के सामने एक लड़का है।

और सामने ग्रीन कलर का हाउस टाइप में बना हुआ है।

और पेड़ पौधे लगे हुए हैं हरे भरे और रा लेफ्ट साइड में पेड़ लगे--

रोड है पुल बना हुआ है।

सामने पेड़ है रोड पर अ गाड़ियां चल रही है।

नीचे टाइल्स लगी है और सफेद कलर की--

और स्टैंड पर और पर्दे सफेद और नीले कलर के लगाए गए--

पेट्रोल टंकी के पास बहुत सारी गाड़ी बाइक कार खड़ी हैं।

एक स्कूल है तो दो अह दो मंजिल का और यहां पर मैदान पड़ा हुआ--

जिसमें घास लगी हुई है और रोड पर बच्चे जा रहे हैं।

और उधर पेड़ लगे हुए हैं घर बने हुए--

बहोत सारी रखी हुई हैं और अ उससे और सामने साइकिल बाइक खड़ी हुई हैं।

तीन चार और इधर और राइट साइड वाली दीवाल मे किसी लड़की कि फोटो लगी है।

उनकी शॉप है लिखा हुआ है न्यू ज्ञानी जी का ढाबा।

और मोमबत्ती जलाई गई हैं सफेद--

धुआ धुआ दी उठ रहा है।

लिखा है उधर शीशे की बिल्डिंग बनी हुई है।

और डस्टबिन का डब्बा रखा है।

और पेड़ लगे हैं पौधे भी लगे हैं छोटे छोटे और--

जाली लगी है जाली की रेलिंग सामने घर बने पेड़ पौधे लगे--

यहां हर टेबल पे नमक का डिब्बा और जग ग्लास रखे हैं।

बहुत सारी प्लेट हैं रखी हैं और कप रखी हैं बोतल रखी हैं बहुत सारी।

मोबाइल सब के रखे हुए हैं ऊपर--